आगे कुछ फूलदान दिखाई दे रहे हैं एक कूड़ा रखने वाला सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दो ट्रकें भारी-भारी दिखाई दे रही हैं। ट्रकों -ल् का ल कलर लाल व ब्लू है। शीशा भी दिखाई दे रहा है।

एक बैजइंग की गई है तथा जिस पर कुछ पोस्टर बने हुए हैं एक टावर भी दिखाई दे रहा है दो तीन व्यक्ति भी दिखाई दे रहें हैं कुछ व्यक्ति खड़े है एक व्यक्ति किसी को देख रहा है एक व्यक्ति साइकल पर से आ से आंगे आ रहा है।

यहाँ पर कुछ हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहा है यह रात क दृश्य प्रतीत होता है आगे दो तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं तथा एक बड़ा सा छतरी दिखाई दे रहा है जिसके नीचे लाइटे लगी हुई हैं।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह व्यक्ति सफेद कलर का टी-शर्ट पहने हुआ है एक पक्की रोड जैसी कुछ दिखाई दे रही है।

यहां पर आए कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं आए था उसके आए गाड़ी के आगे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो हरा बेल-बाल्टी लिया हुआ है एक कुत्ता दिखाई दे रहा है।

तथा ए बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहें हैं हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहें हैं ऊपर हल्का आसमान भी दिखाई दे रहा है आगे कुछ मशीन जैसा दिखाई दे रहा है। धरती नीचे देखी जा सकती है।

यहाँ पर भी कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक औरत आदमी के साथ खड़ा हुआ है।

यहाँ पर कुछ आ पैनल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आंगे एक घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है ऊपर --

कुछ स्कूटर दिखाई दे रही है तथा कुछ साइकल भी दिखाई दे रहे हैं। साइकल पर एक बूढ़ा यक्ति सवार हुआ है जिसका जो सफेद कलर का शाल ओढ़ा हुआ है तथा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो चल रहा है उसकी शर्ट का कलर काला है।